और यहां पे पंखा लगा हुआ है और पंखे का कलर ब्लैक है और यहां पे सी_सी_टी_वी कैमरे लगे हु--

उ ने न्यू टाटा मोटर्स का व्यू उ रखा हुआ है और बहुत से सारे सामान रखे हुए हैं और सामान--

अ टी शर्ट पहना हुआ आदमी जिम कर रहा है और ऊपर बहोत ही सारे पन--

यहां पे बहोत से घर घर में योगा कर रहे हैं और ये लोग--

इसी के इशारे पे योगा कर रहे हैं जो कि वह सबसे आगे बैठा हुआ है।

उम्म्म ऊपर में बहोत सारे फूलों की लड़िया लटकाईं गई है और यहां पे पंखा भीच चल--

यहाँ पे एक छोटी सी नदी है और नदी में पानी भरा हुआ है ए खन में पानी भरा हुआ है और--

हरा है और रेड है और यहाँ पे कुछ तार का बंडल भी रखा गया है और यहाँ पे तार भी रखे गए हैं।

चार गुलदस्ते में फूल रखा गया है और वो फूल हम्म--

यहां पे अं डिस्को लाइट या फिर डी_जे का फ्लोर भी रखा गया है और यहां पे अं वो डिस्को लाइट --

कलर के चेयर पे डो आदमी बैठा हुआ--

मैं --

ज्यादा पानी है और यहाँ पे उ ये पेड़ पौढे का कलर --

कुछ आ आदमी बी खड़े हैं और उसके बगल में --

अ स्टेज पर एक रेड कलर की कुर्सी रखी गई है और उस कुर्सी के बगल में दो--

छाते रखे हुए हैं और वो छाते का डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है और उसके चारों साइड वाइट कलर के फूल लगाए गए।

यहाँ पे एक आदमी अम्म पहाड़ में फोटो खिंचवा रहा है और ये--

अं ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ है और नीचे पिंक कलर का जूता भी पहना हुआ है और--

यहां पे एक जन्म स्थान है और यहां पे ये वाइट कलर का मकान बना हुआ है और यहां पे जन्म स्थान के--

उसके बाद एक आदमी उ किताब लेकर के कुछ उम्म तीन आदमी चार आदमी को सुना रहा है पढ़ करके और वह --

बगहा अ लाइफ इन्जॉय यहाँ पे एक मकान बहुत ही बड़ा मकान बनाया गया है और यहाँ पे रिलायं--

यहां पे एक आदमी इस्त्री कर रहा है और ये इस्त्री उम्म एक शर्ट पे कर रहा है और शर्ट का कलर ग्रे है और उसके ऊपर--

यहां पे एक आदमी जिम कर रहा है और दो तीन आदमी दो आदमी जिम कर रहा है और वह--

यहां पे किराना दुकान है और किराने दुकान पे एक आदमी बैठा हुआ है और वह--